यूज़र रजिस्ट्रेशन ट्यूटोरियल के तीसरे भाग में आपका स्वागत है
इस भाग में हम उन सब की मौजूदगी की जाँच करने जा रहे हैं जिनकी हमने पिछले भाग में चर्चा की थी
जल्दी से संक्षेप में दोहराते हैं जो हमने पिछले भाग किया था
हमने अपने फुलनेम और यूजरनेम के टैग्स स्ट्रिप किये थे
हमने अपने पासवर्ड को स्ट्रिप और एन्क्रिप्ट किया था
फंक्शन्स के इस क्रम को ध्यान रखिये जिससे कि हम अपने एन्क्रिप्टेड वैल्यू को स्ट्रिप ऑफ़ न करें
यहाँ हम अपनी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं
मैं इन सबकी मौजूदगी की जाँच करूँगा
इससे पहले कि मैं यह करूँ मैं डेट निर्धारित करने जा रहा हूँ
अब यह डेट फंक्शन इस्तेमाल कर रहा है
अंदर हमारे पास वर्ष के लिए य है महीने के लिए एम है और दिनाँक के लिए डी है
4 अंक के वर्ष के लिए यह बड़ा य है
यदि हम छोटा य इस्तेमाल करते हैं हमारे पास 2 अंक का वर्ष होगा
अतः अभी मेरे डेटाबेस में
मेरे पास पहले मेरा वर्ष है फिर मेरा महीना और मेरा दिन और यह हाईफन से अलग अलग हैं
यहाँ जब हम अपने डेटाबेस में जाते हैं आप यह देख सकते हैं और यूजर्स में एक वैल्यू प्रविष्ट करें
हम देख सकते हैं कि दिनाँक उल्लिखित फ़ॉर्मेट में है यहाँ यदि हम इस तरह का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं
जब मैं आज का दिन क्लिक करता हूँ आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें वर्ष एक 4 अंक फॉर्मेट में मिला है और हमारा महीना यहाँ और हमारा दिन यहाँ हाईफंस से अलग अलग हैं
यह हमारे डेटाबेस के अंदर इस संरचना में समायोजित हो गया है
ठीक है अतः इफ सबमिट फिर हमें मौजूदगी के जाँच की आवश्यकता है
मैं यहाँ एक टिप्पणी जोडूँगा चेक फोर एक्सिस्टेंस
अब यह वाकई में सरल है
हमें बस यह करना है कि हमें इफ स्टेटमेंट लिखना है और इसके बाद कोड का एक ब्लॉक
कंडिशन होगी यदि फुलनेम यूजरनेम पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड मौजूद हैं हमारे पास यहाँ प्रमाण है हम लिखेंगे इफ यूजरनेम आगे एंड अतः डबल एम्परसेंड चिह्न
फिर हम लिखेंगे पासवर्ड और फिर हम कहेंगे ओह
मैं यहाँ फुलनेम भूल गया अतः मैं इसे यहाँ जोड़ दूँगा
इन्हें डबल एम्परसेंड चिह्न से अलग करें
अंतिम रिपीट पासवर्ड है अतः उसे टाइप करें
हमें इन सबकी आवश्यकता होगी
एल्से हम लिखेंगे एचो प्लीज फिल इन और मोटे अक्षरों में अल्ल फील्ड्स
इसके बाद हम एक पैराग्राफ ब्रेक रखेंगे
साथ ही मैं फॉर्म के पहले भी एक पैराग्राफ ब्रेक रखता हूँ जिससे कि हमारी दी गयी प्रत्येक एरर सूचना में जोड़ने की आवश्यकता न पड़े
अतः इतना ही
अभी इसे करने की कोशिश करते हैं
मैं मेरे रजिस्टर पेज में वापस जाऊँगा
हमें वह यहाँ मिला
रजिस्टर पर क्लिक करते हैं
प्लीज फिल इन अल्ल फील्ड्स
कुछ फील्ड्स यहाँ टाइप करते हैं
अपने पासवर्ड्स में से एक चुनते हैं
हम अपना पासवर्ड दोहराएँगे नहीं
रजिस्टर
रिपीट पासवर्ड रिपीट पासवर्ड

इस समय इसके कार्य न करने का कारण है कि एक मद5 वैल्यू कुछ नहीं टेक्स्ट के मद5 स्ट्रिंग के बराबर है
टेक्स्ट की एक एन्क्रिप्टेड स्ट्रिंग
अतः समझ गया हूँ कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है यहाँ से मद5 फंक्शन हटाएँ
सुनिश्चित कर लें कि आपने अंत के कोष्टकों को हटाया
मैं यहाँ नीचे आऊंगा और अपने पूर्ण डेटा को जाँचूंगा
अतः मैं वापस जाता हूँ और फिर से कोशिश करता हूँ
याद रखिये इसने पहले कार्य नहीं किया था जब हमने रिपीट पासवर्ड नहीं चुना था
अतः यदि मैं पासवर्ड या रिपीट पासवर्ड नहीं चुनता हूँ हमें हमारी एरर मिलती है
रिपीट पासवर्ड को छोड़कर यदि मैं फिर से वैल्यू चुनता हूँ हमें अभी भी यह एरर मिलती है
यह समस्या है
हमें क्या कहना चाहिए कि यदि सब कुछ मौजूद है तब हम अपना पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड बदल सकते हैं
अतः मैं लिखूँगा पासवर्ड इस इक्वल टो मद5 ओएफ पासवर्ड
यह हमारी मूल वेरिएबल वैल्यू को एन्क्रिप्ट करेगा और उसी वेरिएबल में एक नया पासवर्ड कोड रखेगा
हमें रिपीट पासवर्ड इक्वल्स मद5 और रिपीट पासवर्ड भी लिखने की आवश्यकता है
यहाँ टिप्पणी करें एनक्रिप्ट पासवर्ड
हमने अपने पासवर्ड को एन्क्रिप्ट कर लिया है
अब हम आगे जाएँगे और अपने डेटाबेस में सभी डेटा को जोड़ देंगे
मैं यह करने जा रहा हूँ
क्योंकि हमें हमारा डेटा मिल गया है जो पंजीकरण के लिए जा रहा है हम प्रत्येक डेटा के लिए एक अधिकतम सीमा निर्धारित करने जा रहे हैं जोकि इनपुट है
अब हम अपने फुलनेम यूज़रनेम पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड के लिए 25 अक्षर मानते हैं
अतः अधिकतम वैल्यू 25 है

अतः मैं लिखूँगा यदि यूज़रनेम की स्ट्रिंग लम्बाई 25 से लम्बी या बड़ी है या फुलनेम की स्ट्रिंग लम्बाई 25 से बड़ी है

इन्हें अलग अलग करके देखते हैं और और लिखते हैं यदि आपके यूज़रनेम या फुलनेम की लम्बाई बहुत अधिक है
मैं इसे ठीक से रखता हूँ
यदि इनमें से प्रत्येक वैल्यू 25 से ज्यादा या 25 से बड़ी है
हम इन वैल्यूस को एको करेंगे यूजरनेम ओर नो लिखकर
मैं लिखता हूँ मैक्स लिमिट फोर यूजरनेम ओर फुलनेम आरे 25 कैरेक्टर्स
अन्यथा मैं अपने पासवर्ड की लम्बाई को जाँचने के लिए आगे बढूँगा
अब मैंने यह करने का निश्चय किया है चेक पासवर्ड लेंग्थ क्योंकि मैं इसके लिए एक विशेष जाँच चाहता हूँ

मैं लिखता हूँ यदि मेरे पासवर्ड की स्ट्रिंग लम्बाई 25 से अधिक है या स्ट्रिंग लेंथ नहींउम इससे छुटकारा पाते हैं एल्से से छुटकारा पाते हैं
पहली जाँच मैं यह करना चाहता हूँ कि देखना चाहता हूँ यदि मेरे पासवर्ड्स मेल खाते हैं
मैं लिखता हूँ इफ पासवर्ड इक्वल्स इक्वल्स टो रिपीट पासवर्ड तो कोड के बड़े ब्लॉक के साथ जारी रहें
अन्यथा यूज़र को एको करें यूर पासवर्ड्स डीओ नोट मैच
अतः आप यहाँ टाइप कर सकते हैं और हम अपने अक्षर की लम्बाई की जाँच जारी रख सकते हैं
अब यूजरनेम और फुलनेम के अक्षर की लम्बाई को जाँचने के लिए
अतः चेक चार लेंग्थ ओएफ यूजरनेम एंड फुलनेम
और यह होगा जो हमने पहले बोला था इफ यूजरनेम इस ग्रेटर थान 25 बल्कि यदि इस फंक्शन में इस्तेमाल स्ट्रिंग लम्बाई 25 से बड़ी है या फुलनेम की स्ट्रिंग लम्बाई 25 से अधिक है तो हम एको करते हैं लेंग्थ ओएफ यूजरनेम ओर फुलनेम इस टू long अतः केवल इसे सरल रखने के लिए और दूसरे प्रकार से हम लिखेंगे चेक पासवर्ड लेंग्थ
यहाँ मैं उल्लिखित या लिखने जा रहा हूँ इफ अब अपने पासवर्ड्स समानता को याद करें अतः हमें यह केवल एक पासवर्ड वेरिएबल में जाँचने की आवश्यकता है
यहाँ मैं लिखता हूँ यदि पासवर्ड की स्ट्रिंग लम्बाई 25 से ज़्यादा है या हमारे पासवर्ड की स्ट्रिंग लम्बाई 6 अक्षरों से कम है तो हम एक एरर एको करेंगे जो कहता है पासवर्ड मस्ट बीई बेटवीन 6 एंड 25 कैरेक्टर्स
यह निश्चित ही कार्य करेगा
हम इस चर्चा को अपने अगले ट्यूटोरियल में जारी रखेंगे
इससे पहले मैं केवल इसे एक एल्से स्टेटमेंट के साथ समाप्त करता हूँ
अतः अन्यथा हम लिखेंगे रजिस्टर थे यूजर
यूज़र को पंजीकरण करने के लिए हमारा कोड यहाँ होगा
अगले ट्यूटोरियल में हम इसे जाँचेंगे और सीखेंगे कि यूज़र को पंजीकृत कैसे करें और हम अपना कोड यहाँ उस ट्यूटोरियल में रखेंगे
यह मूलतः हमारे पासवर्ड की न्यूनतम और अधिकतम सीमा को जाँचने के लिए था और यहाँ कोड का यह ब्लॉक हमारे शानदार रजिस्टर थे यूजर कोड का भाग है
अतः मुझसे अगले भाग में जुड़िये
मैं रवि कुमार आय आय टी बॉम्बे की तरफ से अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद